पेड़ दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। यह एक पार्किंग है। साइकिल दिखाई दे रही है। ऑटो दिखाई दे रहा है। लोडिंग दिखाई दे रही है। कार --

यहाँ पर खेत दिख रिया है। खेत से गाड़ी गई होगी तो सड़क दिख रही है। बिजली का खम्बा दिख रिया है। बड़े-बड़े पेड़ पौधे दिख री है। सूरज डूबता हुआ दिख रहा है। अब --

बादल दिख रहे हैं। जमीन पे घास उगती दिख रही है।

पत्ता गोबी दिख रही है। कच्चे केले दिख रहे हैं। तरबुज दिख रहा हैं और क्रेटे रखी हुई दिख रही --

दिखाई दे रहा है। एक आदमी दिखाई दे रहा है और दीवाल दिखाई दे रही हैं। सड़क दिखाई दे रही है। कार दिखाई दे रही है। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यूनियन बैंक लिखा हुआ है और एक पाइप दिखाई दे रहा है। ताला दिखाई दे रहा है। चैन दिखाई दे रही है। शटर वाले गेट लगा --

टेबल दिखाई दे रहा है। बोरी दिखाई दे रही है। फूलों की मालाएं दिखाई दे रही है। जमीन दिखाई दे रही है। जमीन पे फूल पड़े हुए है। फूल सफेद --

चार जेंट्स दिखाई दे रहे हैं। मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। तसला दिखाई दे रहा है। पानी दिखाई दे रहा है। फत्तर दिखाई दे रहे हैं। चाकू --

एक पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सफेद कलर में कुर्सियाँ दिखाई दे रही है टेबल दिखाई --

जमीन दिखाई दे रही है। आसमान दिखाई दे रहा है। बोहोत सारी नाव दिखाई दे रही है।

और सूके हुवे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। झण्डा दिखाई दे रहे है।

एक का रंग नीला और एक का जामुनी दिखाई दे रहा है हेलमेट दिखाई दे रहे हैं दो।

तार दिखाई दे रहे हैं बिजली के। तालाब दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है। झरने दिखाई दे रहे --

बिजली के खम्मे दिखाई दिए जा रहे हैं।

माला दिखाई दे रही है। डेकोरेशन दिखाई दे रही है।